यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दिवाल का कलर वाइट है और यहाँ पे बहुत सारी लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे पहाड़ी दिखाई दे रही है और बहुत सारी चट्टाने भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ मकान बनी हुई दिखाई दे रही है इनकी दीवाल का कलर व्हाइट रेड और येलो है।

कुछ पौधे वगेरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे ए दुकान दिखाई दे रही है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट है यहाँ पे अलमारी भी बनी हुई दिखाई दे रही --

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है उसकी दीवार का कलर व्हाइट है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए है।